और यहां पर फैन भी दिखाई दे रहा है एक काउंटर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कांच लगा हुआ है।

शॉप में बहोत सारा कॉस्मेटिक का सामान दिखाई दे रहा है।

वॉल पर पिक्चर्स लगी हुई हैं और यहां पर बहोत सारा फर्नीचर भी दिखाई दे रहा है।

और स्ट्रीट लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं।

वाली मशीन्स भी दिखाई दे रही है और यहां पर एक आदमी ने स्किन कलर की शर्ट पहन रखी है।

और यह एक पेट्रोल पंप है और यहां पे एक बड़ी सी स्क्रीन भी दिखाई दे रही है।

इसमें बहोत सारे आलू रखे हुए हैं।

चावल के गुत्थे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक शोरूम दिखाई दे रहा--

वाटर स्प्रे बॉटल दिखाई दे रही है।

कलर वाला एक डिब्बा दिखाई दे रहा है।